और यहां पे कार्टून सब भी रखा हुआ है जिसमें सब्जी का बहुत ही लेन देन हो रहा है लगता है मार्केट के ये वाला --

लग रहा है आराम से ।

जैसे लग रहा है जहां पे बहुत सारे जानवर भी दिखाई दे रहे है पेड़ भी दिखाई दे रहे है बाउंड्री के अंदर है रखा गया है ये चिड़ियाघर है।

ये एक ब्रिज का पिक दिखाई दे रहे है यहां पर --